यह एक ग्राउंड है यहां पे कुछ लोग खेल रहे हैं।

ओम का स्टीकर लगा हुआ है पंखे लगे हुए हैं।